इस इमेज मे हमे यहा पे एक घर दिखाया गया है। अ ये घर की बाहर व्हाइट कलर एण्ड रेड कलर दिखाया गया है। इसके बाहर कुछ पोस्टर लगे हुए है।

इस इमेज मे हमे कार दिखाई गई है। जो व्हाइट कलर की है। और यहा पे कुछ बड़े-बड़े पेड भी दिखाई गए है। इसके अलावा हमे यहा पे कुछ बिल्डिंग्स दिखाई गई है। और एक ट्रक भी दिखाया गया है।